देखिये आप सभी लोग यह जानते हैं कि ये घर है और ये यह घर बनाने में बोहोत टाइम लगा होगा। इसे बनाने काफी सारा पैसा भी लगा होगा और यह घर शहरों में ज्यादा होते हैं। इस घर में चार से पांच खि जाल भी हैं।

यहाँ से रोड बसें मिलती है। हर टाइम उपस्थित होती है। यहाँ हमें कही टूर पे जाना होता है तो यहाँ से हम रोड बस में बैठते है और रोड बस में ड्राईवर भैया चला--

देखना यहाँ पे कॉलेज है और कॉलेज का स्टोर रूम है स्टोर रूम में बच्चो के प्रक्टिकल्स हो रहे है। प्रक्टिकल्स में फ्लाउअर पोट्स बना रहे है और फ्लाउअर पोट्स में हमारे पेपरों में नम्बर्स आते है। ये इसी के माध्यम से और इसमें दो से तीन लोग देखने वाले भी--

ये भगवान ये भगवान श्री--